बाजू में एक लड़का खड़ा वो दिखाई दे रहा है यहापर एक ट्राफिक है दिखाई दे रहा है।

लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहा पर एक गार्डेन दिखाई दे रही है। गार्डेन मे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है। यहा पर अह बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे। यहा पर रूम के रूम बने हुए दिखाई दे रहे। पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे --

यहा पर एक मंदिर दिखाई दे रहा मंदिर मे लगी हुई जंगले दिखाई दे रहे मंदिर का गेट बनते दिखाई दे रहा है।

मुह पे मास्क लगे हुए दिखाई दे रहे है बड़े बड़े शॉप्स की दुकान लगी हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर--

यहा पर एक दुकान दिखाई दे रही है। जिसमे बहुत सारे कॅलेंडर टांगे हुए दिखाई दे रहे है।

पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है। काउंटर काँच का बना हुआ दिखाई दे रहा है। काउंटर के अंदर बुकस रखी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ अंदर रैकों मे बहुत सारी बुक्स टंगी हुई दिखाई दे रही है। एक डिब्बा भी दिखाई दे रहा है।

एक मॉल दिखाई दे रहा है। मॉल मे बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर--